यहाँ पे पीछे में हमारा बाबा साहब अंबेडकर का तस्वीर है और तस्वीर के एक कोने में बुद्ध भगवान का प्रतिमा है।

देख सकते हैं। यस --

मंदिर के आगे बहुत सारा भीड़ लगा हुआ है और यहाँ पे पेड़ भी है और यहाँ पे लाखोँ श्रद्धालु भक्त आए हुए हैं इस मंदिर में पूजा करने के लिए और --

पीछे एक तालाब देख सकते हैं जहां से ये लोग मछली मार के मार्केट में ले जाके --

यहाँ आप देख सकते हैं कि दो ब्रिज हैं। इस नदी के ऊपर में और एक तो कार बस आदमी के लिए है और दूसरा ब्रिज रेल मार्ग है और इस नदी में बोहोत बड़े-बड़े मछली जीव-जानवर रहते हैं।

ये आप देख सकते हैं ये बहुत ही बड़ा खंडहर किला है | जहां पे --